यह एक खुदाई की जगह है जिसमें की नींव की खुदाई हो रही है।

यह एक खिड़की है जिसमें की वेंटिलेशन दिया हुआ है।

बालकनी है और इसमें छड़ लगी हुई है यहां से हवा पास होती है।

यह एक रेस्टोरेंट है जिसमे सब लोग खाना खा रहे है तथा कुछ लोग ऑर्डर दे रहे है व कुछ इधर उधर जा रहे है।

जोकि अमूल के प्रोडक्ट को मैक्जिमम रखता है और साथ ही साथ उसका व्यापार भी करता है।

यह इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है जिसकी तस्वीर बाएं ओर से खींची गई है।

सौ लोग काम करते हैं तब एक बिल्डिंग बनता है।

उपस्थिति में कुछ मनोरम दृश्य प्रस्तुत कर रहे हैं यह किसी रेस्टोरेंट के बाहर का दृश्य है।

जोकि दुर्ग जिले का है छत्तीसगढ़ स्टेट में आता है यह--

यह एक नाई की दुकान है।

तथा दो गाड़ी या और एक छोटी कार में गाड़ी का कवर लगा हुआ है।

जिसमें उसका एक वर्कर काम करते हुए नजर आ रहा है वह इसके बहोत सारे समान रखे हुए हैं।

यह किसी शोरूम या मार्ट की तस्वीर है जिसमें ठंडी के जैकेट --

यह एक गार्डन है जिसमें की कुछ नए और कुछ पुराने पेड़ पौधे उपस्थित है।

इससे बच्चे आकर्षित होते हैं व--